कुर्सियां कुर्सियों के ऊपर चादर चरा है। सामने एक स्टेज दिख रहा है। जहां पे एक लव साइन है।

यहाँ के एक मंदिर दिख रहा है। सामने कुछ सीढ़ियाँ हैं। मंदिर का कलर है व्हाइट एंड क्रीम कलर ।

एंड एक ट्री दिख रहा है। मंदिर का कलर है ब्लू एंड व्हाइट कांबिनेशन का।

जो होते हैं ना वो खींचने वाला वो दिख रहा है। कुछ ब्रिक्स दिख रहा है। साइकिल बाइक भी दिख रहा है।

सामने एक फिश मार्केट दिख रहा है। जिधर में बहोत सारा प्रॉन दिख रहा है।

दिख रहा है। कटला फिश दिख रहा है। एक महिला उस फिश को --